अंदर सफ़ेद कलर की लाइट जल रही है ऊपर एक स्टील का बाउल रखा है।

बहुत सारी औरतें है जो बैठ कर पूजा कर रहे है सामने --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

जिसपे सफ़ेद अक्षर से एच.डी.एफ़.सी. बैंक लिखा है सामने एक गार्ड है जिसके पास बन्दुक है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है और नदी के ऊपर में साइड एक --

यहाँ पर एक रूम है रूम में लाल कलर की बेडशीट है बेड पर दो पिल्लो रखे हुए है जो गुलाबी कलर के है।

यहाँ पर एक रोड बना है रोड पे --